दूल्हा है शेरवानी पहना हुआ है गोल्डन मेरून पंजामा है साइड से ओरेंज कपड़ो में और वाइट कपड़ो में लड़का खड़ा हुआ है पीछे की दीवार गुलाबी है नीचे का फर्श कथ्थई है।